मैदान के बगल में बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है। चारों तरफ हरे-हरे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

बहुत ही सुंदर तालाब है। तालाब के किनारे बहुत ही रंग-बिरंगे बोट रखे हुए हैं।